जो कि पिंक कलर का टी-शर्ट और ब्लैक ब्लू कलर का पैंट पहेना हुआ हैं और एक व्यक्ति व्हाइट कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है।

इस इमेज में एक कंस्ट्रक्शन का काम दिखाई दे रहा है जहां पर लोहे के सरिये खड़े हुए हैं। वहीं पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसके हाथ में एक कॉपी नजर आ रही है।

इस इमेज में एक स्टेशनरी की दुकान दिख रही है। स्टेशनरी की दुकान पर दो से तीन चार व्यक्ति खड़े हुए हैं। एक व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है औरे उसी के हाथ में उसकी चाबी भी है।

एक लड़की जोकि ब्लू कलर की सॉक्स पहनी हुई है और ऊपर चश्मा लगाए हुए है और वही लड़के ने ब्लू कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है और व्हाइट कलर का कैप पहना हुआ है।

इस इमेज में एक स्टेज शो हो रहा है जहां पर कुछ बच्चे लोग डांस कर रहे हैं जिनमें से एक के हाथ में फ्लैग है। वो लड़की --

इस इमेज में पत्थर की बड़ी सी चट्टान नज़र आ रही है। इस चट्टान पर छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं जो हरे कलर में दिख रहे हैं।

इस इमेज में एक दुकान नजर आ रही है जिसमें ए_टी_एम लगा हुआ है और ए_टी_एम पर रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है। उसी ए_टी_एम के बाहर एक व्यक्ति --